ए इस चित्र में नकली फूलो के गमले दिखाई दे रहे है।

वृक्ष्य दिखाई दे रहे है सूखे पत्ते दिखाई दे रहे है।

अत्विक वस्तुएँ दिखाई दे रही है।

यह एक होटल का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़े से मेले का चित्र दिखाई दे रहा है।

जहां बड़े बड़े तंबू दिखाई दे रहे है व्यक्तिगत भीड दिखाई दे रही है।

इस चित्र में अनेक प्रकार के भगवानों की मूर्तिया दिखाई दे रही है गेंदे के फुल दिखाई दे रहे है।